ये एक गाड़ियों का शोरूम का दृश्य है जिसके अंदर कुछ गाड़ियां खड़ी है एक बोनट खुला हुआ है दूसरे का ये बंद है।